यहां पर एक आदमी शीशे में अपनी फोटो खींच रहा है।

तथा इन छल्लों का अलग अलग डिजाइन है।

यहां पर दो ट्रैक्टर से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें चार दीवारें बनाई गई है और ऊपर ढकने के लिए शेड लगाए हुए हैं।

यहां पर हर तरफ हरे हरे घास ही फैली हुई है बीच में सड़क दिखाई दे रही है।

एक आदमी ऐसा लग रहा है जैसे कि फोटो में खींच रहा शीशे के सामने बैठकर और एक आदमी अपना फोन चला रहा है।

इस कमरे के पीछे टॉवल्स वगैरा टंगे हुए पीछे खिड़की दिखाई दे रही है।

तथा यहां पर दीवारों के साथ में कुछ सामान भी रखा हुआ है और दीवारों पे कुछ स्टीकर भीं चिपकाये हुए है तथा ऊपर फैन भी लगे हुए हैं।

इस प्रकार यहां पे अच्छे से सामान को दिखाया हुआ है।

यहां पर हर सामान अलग अलग भरा हुआ दिख रहा है।

प र दो आदमी दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है वो कोई काम कर रहे हैं।

लाल पीला हरा अलग अलग कलर डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें इसके गेट पर लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क --

उधर सामने एक छोटा सा गेट कमरा सा दिखाई दे रहा है।

रूम का गेट खुला है और नीचे रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट बिछी हुई है।

और बीच में एक सड़क दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी बैठ कर फोटो खींच रहा है।

एक आदमी साइकिल पे जा रहा है और दो आदमी ऐसे खड़े हैं और यहां पे दो तीन ऑटो वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक कोई मंदिर जैसा दिख रहा है जिसकी बिल्डिंग बहोत लंबी है।

और हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है हरी हरी घास ही घास फैली हुई है।

फन लगा हुआ है और इस रूम में हल्की हल्की पिक्चर्स भी दीवार पर चिपकी हुई हैं।

पिक्चर से बना हुआ पीछे हर तरफ लाइटे हि लाइटे दिख रही है।